घर में घर में जो खड़ा है उसके पीछे में ये काराकाट लगा है करा गाड़ी ब्लू रंग की है।

उसका नाम है डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह स्मृति स्पेशलिस्ट क्लीनिक उसके अंदर में ए_सी --

जैसा डब्बा है उसमें दवाई छिड़काव करने के लिए रे रखा गया नीचे में एक कूट है एक लाल कलर की प्लास्टिक में एक दवा है।

पैकेट में कही खुलै हैं कही महंगे कलम भी हैं जिसका म नाम है क्रीपर ।

वो ढाबा को अच्छी तरह से सजाया गया है झंडी से और लाइट से भी रेलिंग --